मेगा डांस की शायद प्रैक्टिस कर रहा है।

संथान है यह बिल्डिंग चार फ्लोर की है।

यह गाँव का एरिया लग रहा है साइड में कुछ ईंटें पड़ी हुई है बहुत सारी घास फूस के साथ स्लाइडिंग भी रखी हुई है कुछ पेड़-पौधे हैं।

पुश अप कर रहा है ऊपर नीचे एक आदमी डंपलिंग कर रहा है।

मशीन की साइड में लाइट जल रही है मॉनिटरिंग भी शायद नीचे जो--

बाउंड्री बना कर पेड़ पौधे लगाए गए हैं छोटे छोटे।

शादी का माहौल है बहोत सारे गेस्टेस खड़े है बैठे हैं कुछ--

धुप तेज खुली हुई है आसमान साफ है हल्के हल्के बादल हैं बिल्डिंग काफी बड़ी है एक ए_सी भी लग रहा है।

खूब सारा खाने पीने का गृहस्थी का सामान मिलता है इसमे खूब सारी चाय की पत्ती के पैकेट भी रखे हैं।